गुलाबी रंग का पेंट है दीवार पर दीवार पर और उस पर लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ा पांचल अधूरा कैमूर--